स्टेट के बीचों बीच एक सादे रंग का सोफा है जिसके ऊपर दो इंसान बैठे हुए एक इंसान ने--

खेतों में कई जगह पर पेड़ है। पेड़ों के पत्तों का रंग हरा है। हम बीच में कई जगह पर झोपड़ी बने हुए प्रतीत हो रहे हैं।

आस पास कुछ टिबिया है कुछ फ्रिज --

यहां ऊपर पंखे भी लगे हुए हैं पंखों का रंग सदा है आस-पास के दीवाल वो भी रंग सादा यही प्रतीत हो रहा है।